जो पूरा हरा भरा और उसके सामने एक लाल रंग की बिल्डिंग सी खड़ी है पूरी बहुत बड़ी और--

इस पिक में बताया है एक रेस्टोरेंट जैसा है।

इस पिक में बताया है एक होल जैसा मूर्ति रखी है बड़ी व्हाइट रंग की बुद्ध वाली और--

उस दुकान के बगल मे एक शटर है जो ब्ल्यू कलर से पेंट किया हुआ है वो ऊपर बोर्ड लगा है नीलकंठ कार ए सी ।

ये एक जगह है जहां पर लोग--

और ज जमीनों पर घ घास जगी हुई है।

और कुछ डब्बों में टॉफियां वोफियां रखी है।

और लाल रंग से लिखा है ओम सत्य सलूशन उसके बगल मे और दरवाजा रखा है ब्राउन कलर का रखा --

एक डेकोरेट कर रखी है जगह--

जगह हैं जो टेबल पर बहुत सारे लोग खड़े हैं।

इस पिक में बताया हैं एक प्रोग्राम हो रहा हैं जिसे डेकोरेट कर रखा है कार्टून के बस से--

एक दुकान है जिसपे बोर्ड लगा हुआ है श्री केदारनाथ फार्मेसी का ब्लू कलर का बोर्ड है।

इस पिक में बताया है एक दुकान है।

जिसमें एक लड़का खड़ा है ब्लू कलर के कमीज शर्ट में--

जिसमें कुछ बोतलें रखी हैं मैगी के पैकेट रखे हैं लाल कलर के पैकेट है ला--

इस पिक में एक लड़का चेयर पे बैठा है काले रंग की।